यहाँ एक स्टेशनरी का दुकान है यह व्यक्ति काफी सारा पेन निकाल कर दिखा रहा है दूसरे व्यक्ति को की आप ऐसा ऐसा कलम खरीदे।

प्लेयर के हैं एट्सेटरा एट्सेटरा एक्से --

यह चित्र किसी मंदिर का हो सकता है क्योंकि ये तिरुवन भगवान जी का है।

नहीं मतलब शादी करके जाते हैं सॉरी ।

ऐसा लगता है सिंघाड़ा का खेती इसके चारों तरफ किया जा रहा है |

और ये कुछ काफी अनोखे अद्भुत दिख रहे है दम --

इ बाल दाढ़ी बनाने वाला सैलून है नाम बहुत बढ़िया रखा है बाल और दाढ़ी मतलब बाले दाढ़ी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा तो आपलोग भी सैलून जाइए।

आप बाल दाढ़ी बनवाइएगा इसे बाल दाढ़ी ये व्यक्ति जो टकला होके आया है फोटो खिचाए --